यह गांव का मूर्ति दिखाई दे रहा है जिसके सामने एक काली कलर की भैंस या गाय खड़ी दिखाई दे रही है इसके पीछे के साईड में दो व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहे है महिला खड़ी दिखाई दे रही है।

उसके पीछे एक लकड़ी का गेट बना हुआ दिखाई दे रहा है चदर का शेट अंदर ऊँचा आते हुए दिखाई दे रहा है आसपास कुछ कपडे टंगे हुए दिखाई दे रहे है नीचे एक थेली लटकती हुई दिखाई दे रही है गाय के गले में रस्सी बँधी हुई।

साईड से कुछ यहाँ कुछ रेलिंग बनी दिखाई दे रही है जो की कुछ काले पाईप ओ से बनी दिखाई दे रही है साइड में काले कलर का एक गेट बना हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर के साईड में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चलते हुए दिख रहा है जिसके अंदर छत दिखाई दे रही है पीछे झार--

यह जी गोदान का फोटो दिखाई दे रहा है इसमें चदर का शिट बना हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर मुझे लोहे का एंगल दिखाई दे रहे है च्चे के साईड में कुछ लकड़ी का टेबल और कुछ --

ईंट भी दिखाई दे रही है सामने की साईड में कुछ मशीन दिख रही हैं जिसमे कुछ बाईक के एंगल दिखाई दे रहे है साईड कुछ डब्बे लोहे की दिखाई दे रहे है ऊपर के साईड में कुछ मशीन दिखाई दे रही है ।

यह साइड चद्दर में टिन शेड बना हुआ दिख रहा है साईड में मशीन के ऊपर घुँगरू लटका हुआ दिख रहा है ऊपर एक कपड़ा बिछा हुआ दिखाई दे रहा है।